यहाँ आगे जो दृश्य है यहाँ मकान जो दिखाई दे रही है बह एक बहुत ही उपयोगी मकान है जिसमें शायद स्कूल कॉलेज एसे प्रतीत होते कि उससे आगे जो बिल्ल्डिंग जो फोटो लगी है भीमराव अमबेडकर का है।

जो एक आगे दृश्य दिखाई दे रहा है वहां पर एक छोटा सा ओपन हु - हु घर टाइप का है--

परवासी स्थल है और बगल में कार है यहाँ पर गाड़ी-उड़ी साथ में यहां पास में फुल झाडियां प्रतीत होती है और साइड में नीचे ईटे के रोड्स टाइप के बने हुए है।

ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़े कैंपर बिल्डिंग टाइप का है जिसमे खुली स्थान है जिसमे कुछ व्यक्ति लेटे हुए--

कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है नीचे फर्श लगे हुए है बगल मे रूम है।

पास में पेड़-पौधे दिखाई पड़ रहे है और यह शायद अ- देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक मंदिर है और--

बिकासियत अथार्त बचा जो किया जाता है जिस उत्पादन के साथ हम राज करते हैं और ये एक बुसिनेस की व्यवस्था बुझा रही है।

--आगे जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वह एक सागर या महासागर का दृश्य प्रतीत हो रहा है।

यहाँ पे एक दृश्य दिखाई दे रहा है वो एक मकान का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमे पाइप पूप लगे हुए है नीचे डब्बे है जिसमे शायद या ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि सब मिल्क का कार्य कि जाती है।

जिसे अभी गाड़ी के पहिये दिखाई दे रहा है जो आ रहे है और यहाँ पास में छोटी सी घर पेड़-पौधे एवं घास-फूसें प्रतीत हो रही है।

आगे जो दृश्य दिखाई दे रहा है बहुत ही मनमोहक दृश्य और नीचे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीचे बीच में शायद रोड है या जल टाइप का है जिसमें गुलाबी कलर से कुछ किया हुआ है।